बूट नजर में आ रहा है जूता पहन के है और बिलकुल ही उसके उप एक बंदा छुपा हुआ है पत्थर के बीच में तो बहोत ही बढ़िया नजारा आ रहा है ये शायद एनवायरनमेंटल यानी प्राकीर्तिक नेचुरल ब्यूटी है इस जगह का पत्थर वगैरह बहु --

तो शायद कोई उत्सव वगैरह ओ मना रहा है घर के सामने और ये जो घर है इनमें प्लास्टर नही है थोड़ा सा पुराना महल का लग रहा है ।

उसके ऊपर पेड़-पौधे भी नज़र में आ रहा है बहोत सारे पेड़-पौधे भी है जएगा बहोत ही अच्छा लग रहा है नेचुरल ब्यूटी है जगह का तो इसलिए वो बहोत ही अच्छा --

यह पर भी हम देवी सरस्वती एम मूर्ति नजर में आ रहा है और डेकरैशनस बहुत अच्छा किया गया है पंडल में और बहुत सारे बलून यहाँ पर है लगया गया है| और उसके सामने एक बंदे को दिखाई दे रहा है वो शायद पूजा कर रहा है।